नमस्कार दोस्तों bash में case statement पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम एक उदाहरण के साथ case statement के महत्व case statement के syntax के बारे में सीखेंगे
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको shell scripting का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system और gnu bash version 4110
कृपया ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है
bash shell में conditional statements के दो रूप हैं if statements और case statements
case statement को ifelse statement के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है
case statement को प्राथमिकता the जाती है जब चयन करने के लिए वहाँ कहीं items हों
यह आमतौर पर script में menus बनाने के लिए उपयोग किया जाता है
सिंटेक्स देखते हैं
case space $dollarvariable space in match_1 क्लोज राउंड ब्रैकेट स्पेस commands और दो बार सेमाकॉलन
match _ n close round bracket space commands और दो बार semicolon asterisk close round bracket space command _ to _ execute _ by _ default और दो बार semicolon esac
variable की तुलना match _ 1 से होती है
यदि यह match नहीं होता है तो यह अगले case पर चला जाता है जो match _ n है
यह जाँचेगा यदि इनमें से कोई एक स्ट्रिंगvariable के साथ मिलान खाता है
यदि हाँ फिर सभी commands double semicolon ;; तक निष्पादित होती हैं
यदि variable से मिलान नहीं होता तो asterisk के साथ सहयोगी commands निष्पादित होती हैं
यह default case condition है क्योंकि asterisk सभी strings के साथ मेल खायेगा
esac case block के अंत को चिन्हित करता है
case statement को एक उदाहरण के साथ समझाते हैं
मैंने पहले ही program टाइप कर दिया है अतः मैं case sh फाइल खोलूँगी
program एक चेतावनी संदेश prints करता है जब disk space एक निश्चित सीमा तक पहुँचता है
यह shebang line है
bash का स्थान अन्य लिनक्स में भिन्न होता है जैसे centos redhat आदि
पहले उपयोगित /bin/bash सीधे binary file को चिन्हित करता है
यहाँ env उपयोग किया जाता है true location को abstracts करें जहाँ bash स्थित है
यह shebang line किसी भी gnu/linux system पर script की portability को बेहतर बनाता है
dfhyphen h मानव पठनीय form में disk space की उपयोगिता प्रदर्शित करता है
output sortrk5 तक पहुँचता है जो विपरीत क्रम में पाँचवे column को sort करता है
output फिर awk fnr == 2 {print $5} में passed होता है
जो दूसरी line के पांचवें क्षेत्र को extracts करता है
अंततः % sign निकालने के लिए output cuthyphen d %hyphen f1 में passed होता है
यह case statement की पहली line है
यहाँ हम 0 और 69 के बीच के space की तुलना करते हैं
यदि मेल खाता है तो यह everything is ok prints करता है
फिर यह 70 और 89 या 91 से 98 के बीच के space की तुलना करता है
यदि मेल खाता है तो यह clean out there s a partition that is $dollar space % full prints करता है
यहाँ यह space की तुलना 99 के साथ करता है
यदि मेल खाता है तो यह hurry there s a partition at $dollar space % prints करता है
यह default case condition है क्योंकि asterisk सभी strings के साथ मेल खायेगा
और यह case statement का and है
अब file को निष्पादन योग्य बनाने के लिए terminal पर जाएँ
type करें chmod space plus x space case dot sh
type करें dot slash case dot sh
everything is ok ध्यान दें output आपके system के disk space के आधार पर अलग अलग होगा
मेरी machine में क्योंकि 0 से 69 के बीच मिलान पाया गया है यह everything is ok prints करता है
अपनी machine पर printed message को देखें
आप समझने में सक्षम होंगे कि कौन सा case statement निष्पादित हुआ
यह हमें tutorial के अंत में पहुँचाता है संक्षेप में
इस tutorial में हमने disc space उदाहरण के साथ case statement के महत्व case statement के syntax के बारे में सीखा
नियत कार्य के रूप में
गणितीय गणना के लिए एक मेनू चालित प्रोग्राम लिखें
यह यूजर inputs a और b लेना चाहिए
यह गणितीय operator plus + minus division/और multiplication * के बारे में पूछना चाहिए गणना करें output print करें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
spoken tutorial project team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
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी bombay से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद